यहाँ पर बहोत गहरी रेलिंग लगा रखी है इसने।

यहां पर दो दुकान है।

यहां पे मैरिज होम वगैरा है।

ओ सुंदर लग रहे हैं।

नीचे प पन्नी में रखे हुए हैं और सामने--

कितने सारे आदमी उसके पास खड़े हुए है।

माला वगैरा भी टंग रही हैं यहां पर सामने बोर्ड के नीचे।

लेडीज और जेंट्स बैठे हुए हैं।

पंखे लाइट वगैरह लगी हुई है।

सेवाराम जी छोले भटूरे वाला।

यहां पे दो लड़के बैठे हुए हैं इनके सामने ब्लैक कलर के दो --

इसमें कितनी सारी अटैची रखी हुई हैं यहां पर।